एक लड़की के पास फुटबॉल दिखाई दे रहा है।

शॉप पर अलग अलग तरह के गारमेंट्स है जहां पे फैंसी ड्रेस --

आप यहां से दैनिक जरुरत का सामान--

इस पिक्चर में सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।